मम्मी डैडी दुकान के बाहर से ली गई फोटो है।

दूसरे दुकान के बाहर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

बहुत सारी चीजे दिखाई पड़ रही है।

और कुछ काई भी लगे हुए है।

ऊपर पूरा करकट से घिरा हुआ है।

इस दृश्य में आठ लोग दिखाई पड़ रहे हैं।

उजाला पीला ब्लू प्रकार के पीछे के साइड में एक बड़ा सा टी_वी में पोस्टर दिखाई पड़ रहा है जिस पे स्कूटी का प्रचार किया जा रहा है।

एक दरवाजा दिखाई पड़ रहा है दीवाल का रंग उजाला है।

टेबल के ऊपर पर्दा लगाया गया है।

कैस्ट्रॉल लिखा हुआ है।

इस दृश्य मे बहुत सारे लोग हैं जिसके हाथ मे कुछ है।

वो लोग पुल के नीचे नदी में कुछ कर रहे हैं एक आदमी है जिसका हाथ दिखाई पड़ रहा है जिसने ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है।